इसमें की रैकों में कई सारा सामान जैसे कि साबुन और अन्य वस्तुएं रखी हुई हैं।

इसमें की सामने की ओर नीले कलर का शटर लगा हुआ है।

और उसके ऊपर एक नीले कलर के बोर्ड में केनरा बैंक लिखा हुआ है।

रोड के आगे एक हरी कलर की जाली लगी हुई है।